और यहाँ पे बहुत तरह-तरह की बुक रखी गयी हैं पेपर भी रखे गए है बहुत तरह-तरह की पढ़ने के सामान रखे गए हैं।

और कांच के बनाये गये है कांच दिये गए है सीसी की लगाई गई है।

वहाँ आदमी तरफ देखने को मिल रहे है जो एक वाइट कलर से घर को पेंट किए गए है जो लाल कलर से पेंट किए गए है।

और आगे तरफ पहाड़ पर्वत देखने को मिल रहे है जो बेहद ही खूबसूरत सी फोटो को क्लिक की है।

और जो रात के समय में फोटो वो लिए गए हैं जो बहुत ही अच्छे से फोटो आए है देखने को मिल रहे हैं।

सड़क है जो यहाँ पे देखने को मिल रही है जो गाड़ी आ रही है उधर से भी गाड़ी जा रही है और एक--